इसमें दो लड़का हाथ में बैट लिए खड़ा है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस मंदिर को बहुत अच्छा से सजाया गया है।

यह एक जगह है जहां पे तीन लोग खड़े हैं जिस मे से दो लड़का और एक महिला हैं।

चारो तरफ से पौधा से और पेड़ से घिरा हुआ है जो देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है ।

इस रूम में कई तरह की लाइटें लगी हुई हैं और एक व्हाइट कलर का पंखा भी लगाया गया है।

कई लड़के और लड़कियां हैं सभी अपने हाथ ऊपर करके खड़े हैं।

यह एक जगह है जहां पे ग्रे रंग की कार खड़ी है।

इस मंदिर से दूसरे मंदिर तक बीच में धागा बांधा गया है जो बहुत अच्छा दिख रहा है।

मंदिर के किनारे कई घर भी है।

यह एक रूम है जहां सोफा लगा हुआ है और उस सोफे पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है।

यह रोड पर से लिया गया एक सीन है। जिसके सामने एक बड़ा स्कूल का बिल्डिंग है।

इस जगह के किनारे कई बड़े बड़े बिल्डिंग है जिसका रंग आसमानी गुलाबी पीला--

इसके किनारे एक ब्लू रंग का गेट लगा हुआ है।

इस नदी के किनारे एक बड़ा बिल्डिंग है।

इस नदी के किनारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिससे इसका दृश्य बहुत अच्छा दिख रहा है।

दीवार के सामने एक पॉलिथीन में कुछ टांग के रखा है।

यह एक रूम है जिसमें एक तरफ का दीवाल वाइट है और दूसरा तरफ ब्लैक है।

यह एक जगह हैं जहां कई गाड़ियां खड़ी हैं।

इस रोड के किनारे छोटे छोटे पौधे और बड़ा पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस जगह कई लोगों की भीड़ है।

और यहां से आसमान पूरा नीला दिखाई दे रहा है।

आसमान में बादल छाए हुए हैं।

इस घर को कई तरह के लाइट से सजाया गया है।

के बाहर का दीवार वाइट रंग से पेंट किया गया--

तीनों लोग अपने-अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं।

इस जगह पर गमला में छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं।

पेड़ लगे हुए हैं।

काउंटर के ऊपर दोनों तरफ दो पानी का बोतल रखा गया है।

सामने में टी_वी चल रहा है।